इनके गले में रेड कलर का ब्लूटूथ है।

और रूम का दरवाजा लगा हुआ है उसके बाजू में स्विच है।

ये हॉल है और हॉल डेकोरेट किया है बाकी काफी बहुत सुंदर है और--

आदमी लोग हैं काफी और --